एक काले कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है। दरवाजा --

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि मोटर साइकिल के पास खड़ा है। उसने वूडन कलर की शर्ट पहनी हुई है। उसके सामने एक और मोटा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी --

ए.टी.एम का कलर नीला दिखाई दे रहा है।

आसपास पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर एक गाय खड़ी हुई दिखाई दे रही है। गाय का कलर सुंदर है। पीछे दो लाइट दिखाई दे रही है जोकि लाल कलर की है।

जो फ़ोन पे बात करता हुआ दिख रहा है सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

गमले पीले कलर का दिखाई दे रहा है गमलो में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है घसरपट्टी जोकि नीले हरे लाल कलर की दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है हरे-हरे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक स्कूल का बरामदा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर फ्रूट मार्केट दिखाई दे रहा है बहुत सारे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं।